गुलदस्ता वुल्द्स्ता सजेले उजेले हैं देखिए नीचे कितना बढ़िया सब कुछ है --

आप देख सकते हैं कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान में थोक-थोक कपड़े मिलते हैं और बगल में देख सकते हैं जो गद्दे होते हैं। गद्दे के जो ऊपर कपड़े रहते हैं वो कपड़े भी मिलते हैं यहाँ पे देखिए थोक में मिलते हैं अच्छे दामों में मिलते हैं खूबसूरती कपड़े मिलते हैं और भी बोहोत बोहत सारे यहाँ पे कालीन कुलीन भी यहाँ पे अच्छे दामों पे मिलते हैं क्यूंकी वही सब का दुकान --